यहां पे सामने सड़क बनी हुई है सड़क पे बाइक जा रही है ए-एक सामने ऑटो जा रहा है कुछ लोग पैदल जा रहे है बीच सड़क में।

और सामने कार जा रही है बाजू में एक बड़ा सा मकान बना हुआ है जिसके सामने काफी सारी कार खड़ी हुई हैं।

सामने पुल बना हुआ है जिसके नीचे एक खंभे बने हुए हैं ऊपर रेलिंग बनी हुई है।

ऊपर कुछ बैग लटक रहे हैं बाजु में एक में पेन रखे हुए --

यहाँ पे एक जैसा बना हुआ है जिसपे काफी सारे बच्चे चढ़े हुए हैं।

और ऊपर बादल दिखाई दे रहा है खम्बे जैसे काफी सारी लकड़ियां गड़ी हुई है।

यहां पे मकान की तरह दिखाई दे रहा है जो बहोत आगे तक गया हुआ है जिसमें हर फ्लोर पर --

सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है सामने सड़क बना हुआ है ऊपर उसमें टीन सेट है ऊपर छत डला हुआ --

यहाँ पे सामने एक बड़ा सा मकान बना हुआ जो महल की डिज़ाइन में बना हुआ है ऊपर गुंबट है ऊपर लाइटिंग लगी हुई है।

बीच में पानी की तरह दिखाई दे रहा है पीछे भी लाइटिंग लगी हुई है सामने खिड़कियां लगी हुई है बड़ी-बड़ी।

ड्राइंग की गई है वहाँ पे कुछ तस्वीरें बनाई गई है ऊपर दो चूरियां लगे हुए सामने।

यहां पे सामने काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पे बहुत बड़े-बड़े झूले लगे हुए हैं दो तीन गोल वाली झूले हैं जिनमें डालिया लटक रही है।

नीचे शटल लगी हुई है टीन सेट जैसा बना हुआ है एक रिपटा सा बना है बाजू में।

यहां पर सामने एक मकान बना हुआ ऊपर रेलिंग बनी हुई है जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ है सामने एक दादी अम्मा बैठी हुई सामने सीढ़ियां बनी हुई है।